यहाँ पर ऑर्ड रोल्स है जहाँ पे एक रोड के किनारे में बहोत अच्छा रूम्स बना हुआ है जिसके सामने में एक बाइक है चारों तरफ से रोड है और सामने में आसपास में एक दो घर दिखाई दे रहा है बोहोत ही साफ -सफी जगह हैं।

चाय वाला रेस्टोरेंट है भैया ये सहर में लगा हुआ रहता है और बहुत ही अच्छा इस यहाँ जाने के बाद पीने से बहुत स्वादिष्ट आता है और यहाँ अनेक प्रकार के खाने के स्वादिष्ट स्वादिष्ट सामान मिलते हैं जिसमें कि अनेक दूर दूर से आदमी आ के स्वाद लिया जाता है।

और यहाँ सामने बहोत ही अच्छे ठंग से साफ सुथरा है जिसमे दो दो तीन तीन मंदिर दिखाई दे रहे है सामने में दो आदमी दिखाई भी दे रहा है और सामने में एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है जो हरा भरा रंग रूप से है।

और सामने में सो पत्ती लगा हुआ है और बड़ा सा गेट लगा हुआ है आप देख सकते है बहुत ही साफाई ढंग से दिख रहा है जिसमे पंखे का साफ़ मन से देखा जा सकते।